बहुत सारे जूते दिखाई दे रहा है बहुत सारे चप्पल भी दिखाई दे रहा है सैंडल भी दिखाई दे रहा है।